और व्हाइट पत्तियां जैसा कुछ रीबीन दिख रहे है पीछे ब्लू कलर का दरवाजा टाइप कुछ दिख रहा है।

ये एक रूम है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां हैं कुर्सियों पर अंकल होरी बैठे हुए हैं जिन्होंने ब्लू --

ये बेकरी शॉप है जिसमें केक पड़े हैं काउंटर के अंदर कांच के काउंटर के अंदर जिसमें बहुत सारे केक पड़े हैं लाइट जल रही है।

और कुछ मशीनें रखी हुई हैं बहुत से एक अंकल कुर्सी पे बैठे हैं जिन्होंने येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

सामने को घर दिख रहे हैं एक येलो कलर का घर है उसके पास में एक शोप है।

सामने को एक घर है जो कि व्हाइट कलर का है नीचे को एक शटर वाला दरवाजा जा रहा है दरवाजे के पास कुछ मोटरसाइकिल खड़े हैं।

और एक बॉक्स रखा हुआ है जोकि रेड कलर का है अ उपर को लाइट जल रही है।

बहुत से दरवाजे निकल रहे हैं जिसमें ऊपर रोशनी सी दिख रही है।

एक अंकल खड़े हैं जिन्होंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है एक अंकल व्हाइट शर्ट में बैठे हैं जिन्होंने हाथ में बुक ले रखी है।

सामने को मंदिर है जो की येलो कलर का है दीवार है ऊपर को नीली कलर की प --

लोहे कलर की पट्टा लगा हुआ है सामने तीन चार खिड़कियां दिख रही हैं एक अंकल व्हाइट शर्ट में खड़े हैं जो गाड़ी को धो रहे हैं।

नीचे दरी बिछी हुई है बच्चे योगा कर रहे हैं।

और लाल कलर का चोला बना रखा है।

मॉल में आंटियां दो बैठ दो आंटियां है एक बैठी है एक खड़ी है एक अंकल है अंकल के हाथ में समान है।

उसके आस पास एक बाइक खड़ी है उसके थोड़ा सा आगे जाके एक बाइक है जिस बाइक पे एक अंकल बैठे हैं उन्होंने व्हाइट कलर की --

जो शटर खुला हुआ है अंदर एक पंखा दिख रहा है व्हाइट दीवार दिख रही है।